ये बहोत बड़ी सी आय थिंक ज्यूस के जूस कॉर्नर लग रहा है। ये जूस की शॉप बहोत बड़ी लग रही है।

और यहां पर बहोत टाइप के जूस मिलते है शेक्स मिलते है मौसम्बी जूस मिलता हैं ऑरेंज जूस मिलता हैं और यहां पर शेक मिलता हैं मैंगो शेक मिलता है बहोत सारे शेक मिलते हैं और यहां पर --

और इसका जुस कॉर्नर बहोत प्यारा सा दिखा हुआ है बहोत साहिल जूस कॉर्नर लिखा हुआ है।

और बहोत अच्छा जैसा लुक बना हुआ है और इसपे जो पे पे पिलर खड़ा हुआ पीलर बहोत आच्छी पेंटिंग हो रही मंदिर में और मंदिर बहोत प्यारा सा लग रहा और मंदिर में बनी हुई है।

और एक आदमी लूंगी पेहन के खड़ा हुआ है सामने एक बाइक भी खड़ी है दूसरी तरफ--

रागनी लग रहा बहुत अच्छा कलर लग रहा पीकॉक का और ये पीकॉक ये रोड पे खड़ा हुआ और बहुत अच्छा पीकॉक लग रहा है और बहुत प्यारा और बहुत यूनिक कलर --

बड़े बड़े होटल जाते हैं वहां पर मैनेजर बनते हैं और उनको संभालते हैं।

है पा पानी के अंदर बहुत सारा लाइट लाइटिंग है और वगैरह से शाम का समय लग रहा और पानी की दूसरी तरफ बहुत सारे पेड़ लग रहे पेड़ से बहुत सारे--

नीचे इसके एक फ्लोर बनी हुई है फ्लोर सिंपल फ्लोर सी लगी हुई है व पत्थर लगा हुआ है।

ये बहुत बड़ी सी एक शॉप लग रही है ये शॉप बहुत प्यारी शॉप लग रही है शॉप के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं।

और लोग ये बहुत बड़ी शॉप लग रही है इंस्ट्रूमेंट की और सारे लोग यहां पर आ के अपना परचेज करते हैं आइटम और यहां पर हर टाइप की भी इंस्ट्रूमेंट आइटम मिल जाती है आइटम ।

विंडोज बहोत प्यारी प्यारी है और विंडो रेक्टेंगल शेप की बनी हुई है और आई थिंक यहां पर टोटल विंडो वन टु थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन आइट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन --

ये बहुत बड़ा सा एक छोटी सी शॉप आई थिंक छोटी बड़ी दोनों ही लग रही है छोटी भी लग रही है बड़ी भी लग रही है मेडिकल स्टोर लग रहा है मेडिकल स्टोर --

और मेडिकल शॉप बहुत अच्छी बनी है इसका आगे रिसेप्शन व्हाइट कलर का बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लुक लग रहा है।

प्रेस के वॉल में जो कलर हो रहा है वो क्रीम बढ़िया क्रीम के कलर लग रहा है।

ये बहोत बड़ी सी एक सैनिटरी शॉप लग रही है व सैनिटरी शॉप के अंदर बहोत सारे--

एक लेडिस एक छोटा बच्चा खड़ा है जिन्हें बिल्कुल छोटे बच्चे की गोदी में लेकर चल रहा है

इसके ऊपर लोहे का ये लैंड लेंटर रखा जा रहा क्रेन के यूज से इसको लेंटर रखा जा रहा--

और ये ट्रेन बहोत बड़ी लग रही है ट्रेन के टायर आप देखिए कितने बड़े बड़े लग रहे है।

और साइड में एक बहोत बड़ा बैंक है इसका बोर्ड बहोत अच्छा लग रहा है बोर्ड में जो पहला बैंक है वो वाइट कलर से लिखा हुआ है।

और इस कार लोग जो भी बहुत स्टाइलिश बहुत हाई फाई को लग्जरी कार खड़ी हुई है।